ब्लू कलर का फर्श दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं और ऊपर को पर्दा लगा है।

जिसमें की कांच लगे हुए हैं कांच यहां पर हमें व्हाइट कलर --

ग्रीन कलर की छत लगी है कुछ पेड़ भी हमें ग्रीन कलर के इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं साथ में यही हमें ग्राउंड में कुछ लोग चलते हुए--

यहां पर वाइट कलर का फ्लोर और शॉप में कुछ हमें--

ब्राऊन कलर की दीवार अथवा रेड कलर की दीवार और रेड कलर और व्हाइट कलर के पर्दे भी दिखाई --

ब्राउन सा टेबल भी रखा हुआ है और एक चेयर भी है।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

येलो कलर की इस की ऊपर मालाएं भी लगी हुई हमें दिखाई दे रही है।

और यहां पर सोफा ब्राउन और ब्लैक कलर का दिख रहा है और साथ में स्पीकर दिख रहे --

कुछ पेड़ ब्लैक और ग्रीन कलर की पत्तियों के साथ बड़े बड़े देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे हमें कुछ बॉक्स दिख रहे है और साथ ही कैलकुलेटर भी दिख रहा है बॉक्स में कुछ टोफिया क्रीम्स और--

इस फोटो में हमें एक व्यक्ति कार की वॉशिंग करते हुए दिखाई दे रहा है जो--

इस फोटो में हमें जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

जो की व्हाइट ब्राउन कलर का है और हमें यहां फ्लोर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।